और यहां पर का बिग बाजार होएते यहां पे सफोला गोल्ड है यहां पे पैंपर्स पेंट होएते यहां पर दो सौ पांच दाम होएते यहां पे बड़का तीन गो बैलून लागेल के --